यहां मुझे बहोत सारी सजावट दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ दुकान दिखाई दे रही--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

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारी सजावट दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक दुकान दिखाई दे रहीं हैं।

इस तस्वीर में मुझे कुछ बर्तन दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारी सजावट दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक टेबल दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ घाट दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक मैदान दिखाई दे रहा--